और लाल कलर की शर्ट पहने हुये है ब्लैक कलर का पैंट और वहीं पर मुझे दिख रहा है की एक बहुत बड़ा खंबा भी लगा है बिजली का जहाँ मुझे टावर समज में आ रहा है उसके बगल में कुछ हरे-भरे पेड़ भी दिख--

उसके फूलों के पीछे कुछ अच्छे गुलाब के फूल भी दिखाई दे रहे है जहाँ पर मुझे लगता है गेंदा के फूल भी है।